और इसके पास में एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

और यहां पर बोहोत से व्यक्ति महिला भी बैठे --

और यहां पर कुछ लड़के भी खड़े हुए हैं और एक बच्चा भी खड़ा है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है इस दुकान में बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

यहां पर ये बहुत बड़ा पोस्टर भी लगाया है उसपे लिखा श्री दुर्गा प्रसाद पब्लिक स्कूल ।

ऐसी यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा उसपे लिखा रिसेप्शन ।

और यहां पर एक छोटा सा भी बोर्ड लगा हुआ है इस पर लिखा बस और यहां पर एक टेलीफोन भी लगा हुआ है।

पर ब्लैक कलर की चेयर रखी है और एक व्यक्ति भी खड़ा है जिसने अभी व्हाइट कलर का बालियान पहन रखा हुआ है और यहां पर पंखा और लाइट भी है।

इस घर पर वाइट कलर की कली हुई है।

यहां पर बहोत सारी मच्छिया रखी हुई है।

और यहां पर बहुत सा सामान भी रखा हुआ है।

चल रहे है और यहां पर पानी भी है यहां एक जाल है।

इस जाल में बहोत से कछुए हैं ये इधर उधर चल रहे हैं।

और दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगाया जो रेड है।

यहां पर बहुत सारे टेबल और चेयर रखी हुई है।

और यह पीले और व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत ही बड़ा ऑफिस है।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

और यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है और यहां पर पेड़ पौधे भी लगाया जो बहुत ही घने दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा घर है।

और यहां पर गेट दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान है इस दुकान में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

और इस पर लिखा हुआ है शर्मा टेंट हाउस ।

और यहां पर एक गेट भी दिखाई दे रहा है और दुकान में एक कोन्टर भी है।

इस पर बहोत से दिल बने हुए हैं और यह पिंक कलर के हैं यह केक व्हाइट कलर का है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहां पर बहुत बड़ा पैम्प भी लगा हुआ है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में एक बहुत बड़ा काउंटर जो कांच का बना हुआ है।